और हवाई अड्डे के बाहर एक बड़ी सी कार दिख रही है।

इसमें एक टीम ने नारंगी रंग की शर्ट पहन टी-शर्ट पहनकर खेल रही है और एक टीम हरे रंग के टी-शर्ट पहन कर खेल रही है|

चाम के समय का लग रहा है आस पास बहोत सारे पेड़ और बहोत एक बिल्डिंग है।